यहा पर बहुत सारे पत्थरे दूबाए है। खंडरे बड़े- बड़े और गोल- गोल मीनारे भी बनी हुई है। टूटी- टूटी सड़के भी बनी हुई है।

बीच साइड मे बोहोत सारी और दो पेड़ों की डालिया दिखाई दे रही है। कुछ लोग इस पर चढ रहे है।

पीछे एक बिल्डिंग है उसके पास बड़े बड़े पेड है बिल्डिंग पर व्हाइट और पिंक कलर हुवा है।

यहाँ पर देखिए एक आदमी बेलों पे पानी डाल रहा है और यहाँ पर--